हेल्लो गुड इवनिंग बहुत ही अच्छा आइसक्रीम दिखाई दे रहे है कई कलर के दिख रहे है पिंक कलर के सफ़ेद कलर के पिला कलर के काफी अच्छा काफी फ्लेवर इसमें लगाया हुआ है और बहुत ही महंगा लग रहा हैं ।

पहाड़ भी बहुत ही ऊँचा दिखाई दे रहा है यहाँ पे और पानी भी अच्छा हो स्टोर हुआ है धान भी लगा है यहाँ पे--